इस चित्र मे एक स्टेशनरी की दुकान नज़र आ रही है जो की बहुत सी छोटी है।

चित्र मे एक गार्डन नजर आ रहा है गार्डन के उस पार बहुत ही सुंदर सूरज की- किरने अ अ- आ रही है जो की अभी श्याम का समय है दूर पार बहुत सुंदर पेड़ पौधे भी नजर आ रहे है।

इस चित्र मे एक दीवार नज़र आ रही। दीवार पे बहुत सी लोगोकि तस्वीर लगाए गए है। एक का तस्वीर में ऐसा नज़र आ रहा है।

चित्र मे एक किराना स्टोर आ रहा है जहा पर ढेर सारा खाने का समान रखा हुआ है कॉर्नफ़्लेक्स --

पानी में पानी के फॉउन्टेंस लगे हुए है ऊ कुछ उस पार छोटे छोटे पौधे गमलों मे लगे हुए है बहुत ही सुंदर लाइट्स लगी हुई है बिल्डिंग में।

चित्र मे एक खुला मैदान नजर आ रहा है। मैदान मे बहुत सारे पेड़-पौधे है। दूसरी दूसरी ओर एक व्हाइट बिल्डिंग नजर आ रही है। मैदान मे एक बड़ा सा पिलर लगा हुआ जिसके ऊपर दो लाइटे लगी --